जो अपने कान में कुछ डाल के बैठा है। और यहाँ पे एक पुतले ने कपड़ा पहना हुआ है।

यहाँ पे दो लड़के ने ब्लू कलर की टीशर्ट पहनी है और एक ने वाइट कलर की शर्ट पहनी है यहाँ पे ग्रीन कलर के कार्पेट है।

सादा रंग की बिल्डिंग जैसी दिख रही है जिस में एक बड़ा सा गेट हैं। और यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। एक बच्चा यहाँ पे सीढ़ी मे खेल रहा हैं।